यहाँ ती यहाँ तीन चार गो आदमी है | यहाँ एगो ऑटो है।

यहाँ एक फ्रिज के दुकान लग रहा है।

चीज भी है वहाँ लाइट भी बर रहें हैं।

यहाँ तो खिड़की भी ढेरी --

यहाँ रिक्सा बहुत है | यहाँ कार बहुत है | यहाँ --

गाछ टिरी बहुत उगे है।

यहाँ एक बड़का सा टाबर है | यहाँ घास भी ऊगा है। यहाँ --